नजर आ रहे हैं जंगल दिख रहे हैं बादल में कलर पिंक कलर है पीला कलर ग्रीन कलर है आसमानी कलर --

मकान दिख रहा है बिल्डिंग दिख रही है घड़ी दिख रही है खिड़की दिख रही है सीलिंगे दिख रही हैं वाइट कलर की तार के खंबे दिख रहे हैं ऑटो दिख रही है गाडी दिख रही है